म फिसल पट्टी बनी हुई है फिसलपट्टी से बच्चे या बढ़े जो भी आते है पानी में आते है और मस्ती करते है और तैरते है।

एक एरोप्लेन दिख रहा है एरोप्लेन के सामने एक आदमी दिख रहा है आदमी ने लाइट कलर की ब्लैक कलर की शर्ट पहनी है।

एक हॉस्पिटल है उसमे एक नर्स दिख रही है एक आदमी भी दिख रहा है बेड दिख रहा है बेड की चादर ग्रीन दिख रही है।